सामने में एक पुरुष भी नजर आ रही है।

यह एक एडवर्टाइजमेंट के लिए नजर आ रही है।

और चार रंग की बैलून से डेकोरेट करी है।

यह एक हार्डवेयर शॉप नजर आ रही है।

पीछे में थर्मोकोल भी नजर आ रही है।

मुझे इस तस्वीर में चर्च नजर आ रही है।

यह फूल में बढ़ाकर रखा हुआ नजर आ रही है।

कुछ पौधे भी नजर आ रही है।

और क्रीम रंग का पेंट है।

यहां बहोत सारा पर्दा भी नजर आ रहे हैं।

नीचे में कारपेट मच्छरदानी भी नजर आ रही है।

यहां तीन ठो स्टूल भी नजर आ रहे हैं।